दो तीन आदमी नहा रहे हैं।

और इसके सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और घास भी दिखाई दे रहा--

इसमें खाने पीने का सामान है।

और उसमें लाइट भी जली है।

है और इसके आसपास बॉक्स जैसे बने हुए है।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

इसके सामने बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

और कुछ तौलिए वगैरह बहुत सारा सामान--

और इसमें बहोत सारे उप--

दृश्य में मुझे बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे।

एक दुकान दिखाई दे रही है।

कुछ लड़के दिखाई दे रहे है।

जहां पर लकड़ी से बने हुई चीज़ें खरीद सकते है।

इस दृश्य में मुझे एक--